यहा पर एक सेवन तल्ला सात तल्ला फ्लैट दिखाई दे रहा है जो कि बाहर से तो इसकी साज-सज्जा और इसकी जो रंग है बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है।

थ्री महापुरुष जो है एक फ्रेम में दिखाई दे रहे है जो कि गौतम बद्ध जी है हमारे और हमारे ईसा मसीह जी है और तीसरे है हमारे राष्ट्रपिता गाँधीजी।

और इस बिल्डिंग का जो नाम है वो बहुत ही सुंदर से टाइल्स के ऊपर गोल्डन अक्षरों में लिखा गया है और इसके जो दरवाज़ा है शीशे का पूरा दरवाज़ा लगा हुआ है इस बिल्डिंग का।

यहां पर एक काफी बड़ा-सा सड़क के बीचों-बीच मे क्लॉक टॉवर दिखाई दे रहा है और उस कल क्लॉक टॉवर के पास में बोहत सारी दुकाने दिख रही है।

यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि काफी दूर में फैली है और यहाँ पर एक बड़ा सा कैंपस बनाया गया है।